eclipse पर java में helloworld के tutorial में आपका स्वागत हैं
इस tutorial में हम सीखने जा रहे हैं कि eclipse का उपयोग करके java में एक सामान्य hello world hello world program कैसे लिखें
इस tutorial के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं eclipse 370 और उबंटू 1110
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपके system पर eclipse संस्थापित होना चाहिए
और आपको पता होना चाहिए कि eclipse में फ़ाइल तैयार सेव और रन कैसे करें
यदि नहीं तो संबंधित tutorials के लिए कृपया दिखाई गए हमारी website पर जाएँ
यहाँ java code की एक line है जो hello world message prints करती है
अब इसकी eclipse पर कोशिश करें
alt f2 दबाएं और dialog box में eclipse type करें और enter दबाएं
workspace में ok पर click करें और यहाँ हमारे पास eclipse ide है
add new project now project जोड़ें
file new पर click करें और project चुनें
projects की सूची में java project चुनें और next पर click करें
project नेम में demoproject type करें कृपया ध्यान दें कि demo और project में space न हो d और p capital letters में हों
wizards के ठीक नीचे दाएँ कोने में पर finish पर click करें
demoproject तैयार हो गया है
add project में new class जोड़ें
project new पर दाय़ाँclick करें class चुनें यह एक new java class portlet खोलता है
class नेम में type करें demoprogram और method stubs में किसी एक को चुनें जैसे public static void main
wizard के ठीक नीचे दाएँ कोने में पर finish पर click करें
हम देख सकते हैं कि डेमो प्रोजेक्ट के पास source directory और demo program java नामक एक file है
क्योंकि java में हर class की अपनी file होनी चाहिए इसलिए class डेमो प्रोग्राम केवल demo program java में ही मौजूद हो सकता है
हम let सकते हैं कि editor के लिए वहाँ बहुत कम जगह है और दृश्य धुंधला दिखता है अन्य portlets minimize करें और यहाँ हमारे पास editor है
ध्यान दें कि यह line दो slashes के साथ शुरू होती है अर्थात यह line comment है और हमारे code के साथ कुछ नहीं करती है
इस line को हटाएँ इसी तरह प्रत्येक जो slash astrix और astrix slash के बीच है वह भी comment है
अतः ये comment भी हटाएँ
यहाँ हमारे पास code का bare bones है
add print statement system जोड़ें
ध्यान दें कि eclipse सभी संभव पूर्तियों की सूची देता है
अभी के लिए हम स्वयं command type करने जा रहे हैं;
out println brackets में quotes में type करें helloworld
java में हर statement एक semicolon पर समाप्त होना चाहिए
तो semicolon जोड़ें
यहाँ java में ये पूर्ण helloworld program हैं
सेव करने के लिए ctrl + s दबाएं
दायाँ click करें run as java application code run करें
जैसे कि हम output console पर देख सकते हैं helloworld message printed हो गया है
अब world को java से बदलें
ctrl + s के साथ इसे सेव करें और इसे रन करें
जैसे हम देख सकते हैं कि अब जो मैसेज प्रिंट हुआ है hello java है
अब जानते हैं कि code का प्रत्येक भाग क्या करता है
पहली line दर्शाती है कि class नेम demoprogram है और यह पल्बिक class है
दूसरी line दर्शाती है कि यह main method main method है दूसरे शब्दों में method जहाँ से java में निष्पादन शुरू होता है
जैसा कि हमें पता है यह print statement है
और यहाँ है कि हम java में helloworld program कैसे लिखें
इसी के साथ हम tutorial समाप्ति पर आ गए है
इस tutorial में हमने सीखा कि java में helloworld program कैसे लिखें और java code में code का प्रत्येक भाग क्या करता है
इस tutorial के लिए एक नियत कार्य
greet नामक java class बनाएं निष्पादन के समय program सफल होना चाहिए
spoken tutorial project के बारें में अधिक जानने के लिए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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact @spokentutorial org को लिखे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
यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है आई आई टी मुंबई की ओर से मैं श्रुति आर्य अब आप से विदा लेती हूँ